दरारें हैं और वहाँ

एक ब्यक्ति जो मैदान पर बैठा है। मोबाइल चला रहा है। रेड कलर की शर्ट पहने हुए है।

और कुछ मशीन दिख रहे हैं और बिल्डिंग के उस पार पेड़ दिख रहे हैं। बिल्डिंग भी दिख रही है और मिट्टी के टीले भी दिख रहे है कुछ और यहाँ दिख रहे --

जो दिख रहीं हैं और और अन्दर भी कई सरे बड़े-बड़े मंदिर बने हुए हैं छोटे बड़े।

चौराहे पास एक फोरव्हिलार गाडी है पीछे उसके गाडी है मिरार (Mirror) और कई सारी --

मिट्टी का टीला दिख रहा है और खेत में छोटी छोटी घास बाजू --

यह एक बड़ा सा हॉल है वहाँ पर हॉल गुब्बारों से चारो तरफ से सजा हुआ है उसमें तीन कलर के गुरुब गुब्बारे हैं |